इसमें सारे पेट्रोल मिलते हैं।

में चाइनीज फूड और इंडियन दोनों मिलता हैं जो आप खा सकते हैं टेस्ट ले सकते हैं और इसमें आपको अच्छे-अच्छे व्यंजन मि --

आपको तैराकी करते समय बोहोत अच्छा लगेगा एक बार करके दे --

यह रेलवे लाइन जहाँ तरह-तरह की ट्रेन चलती हैं इसपे।

आप ये तैराकी कर सकते हैं तैर सकते हैं। साथ में आपको इसमें पानी अच्छी मिलेगी। आपके इतनी जादा पानी नहीं मिलेगी की आप इसमें डूब जाए।

ये है कपड़े की दुकान जिस में तरह-तरह के लेडीज़ फैंसी कपड़े मिलेंगे।

ये आपको अच्छी लगे। जैसा कि आप डाइनिंग टेबल देख रहे हैं इसके पीछे डायरेक्ट कुर्सियां लगी हुई हैं उस में आप आराम --